अ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है मूर्ति बनी हुई है बाहर ग्राउंड में और घास उगी हुई है दो गाड़ियाँ खड़ी है।

ये एक मंदिर है और मंदिर के बाहर एक द्वार बना हुआ है जिसमें गणेश जी की मूर्तियां रख बनी हुई है।

यहाँ पे एक जहाज खड़ा हुआ है पानी में और बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

और आसपास पेड़ लगे हुए हैं। कुछ पेड़ सूखे हैं और कुछ पेड़ हरे-भरे हैं और घास हैं और पौधे लगे हुए --

और कुछ गमले है जिसमें पौधे लगे हुए है यहाँ पे ग्रीन कारपेट है और कुर्सिया रखी हुई है जो की ब्लैक कलर की है।

आस-पास हरे-भडे पेड़ हैं और पौधे हैं जो की हरे-भरे हैं और आसमान सफेद है।